कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग प्रकार के कपड़े--

बाहर में एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया गया है जिसमें अनमोल कॉम्प्लेक्स लिखा गया है।

दिखाएगा छवि में एक छोटा सा कमरा दिखाया गया है।

स्टॉल को फूलों से सजाया गया है एवं मिट्टी के कप स्टॉल पर दिखाई दे रहा--

सामने एक बड़े पोल पर तिरंगा झंडा भी दिखाया जा रहा है।

आस पास बहुत सारे पेड़ पौधें भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर तीन बड़े बड़े सिलेंडर टैंक भी दिखाई दे रहे हैं।

उसे कुछ उठा ऊंचाई पर उठाया गया है एवं एक व्यक्ति अपने हाथ में पाईप और जेट स्प्रे लेकर खड़ा है।

दिखाए गए छवि में एक छोटा सा आश्रम का दृश्य दिखाया गया है।

दिखाए गए छवी में एक छोटे से दुकान का दृश्य दिखाया गया--

दिखाया गया दृश्य किसी रेलवे परिषद के दृश्य को दिखाता है।

कुछ ही दूर पर बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति भी खड़ा है जो मोटरसाइकिल पे हाथ रखे हुए हैं।

पंडाल पर बहोत सारी लाइटे भी लगाई गई है एवं पंडाल के आसपास दो दो पहिया वाहन गाड़ी एवं कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं एवं पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं।

दुकान के अगल बगल केले के पत्ते भी लगाए गए हैं एवं केले के पत्तों के पास दो दो पहिया वाहन भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर कुछ ट्रैक्टर खड़ा है ट्रैक्टरों का रंग लाल है।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

एंट्रेंस को फूलों से सजाया गया है एवं नीचे एक बड़ा सा डिस्प्ले दिखाया गया है जिसमें नीतू लिखा गया है।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

यहां दीवारों पर अलग अलग डिजाइन की टाइल्सें से भी लगी हुई हैं एवं एक जगह जॉनसन पोर भी लिखा गया है।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

रूम की दीवारों को सफेद रंग से रंगा गया है एवं --

कमरे में एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर एक माइक्रो ओवन एवं एक व्यक्ति है जो कॉफी बना रहा है।

एक चट्टान पर एक बेडशीट एवं कमल को पसारा गया है।

एक दो पहिया वाहन गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

सभी बच्चों अपने साथ कुछ पुस्तके लेकर बैठे हुए हैं सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए है--

पार्किंग एरिया में एक स्कूटर एवं दो दो पहिया वाहन गाड़ी बाइक दिखाई दे रही है।

कुछी दूर पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं एवं एक पुरुष भी दिखाई दे रहा है जो जींस पहना हुआ खड़ा है उसने नीली रंग की चप्पल पहना हुआ है।

के बीचों बीच दो पैट्रोल फिलिंग स्टेशन दिखाई दे रहा है एवं उन्हें करकटो से ढका गया है।

दुकान में बहुत बड़ी बड़ी अलमारियां लगाई गई हैं और अलमारी में बहुत सारे डब्बे रखे गए हैं।

सी_पी_यू भी दिखाई दे रहा है फर्श को टाइल्सों से भी ढका गया है।

दिखाए गए छवि में एक बड़े से कमरे का दृश्य दिखाया गया है।